इसमें गुब्बारे भी दिख रहे हैं इसमें लाइट भी जलती हुई दिख रही हैं इसमें घास भी हुई है।

इसमें आदमी भी दिख रहा हुआ है। इसमें जिम करने का समान भी दिख रहा हुआ है। इसमें एसी भी दिखरी हुयी है।

इसमें पंखा भी दिख रहा हुआ है। इसमें शीशा भी दिख रहा हुआ है।

इसमें ईंट भी दिख रही हैं इसमें दीवार भी दिख रही हैं।